मशीन वगैरा भी दिखाई दे रही है। थर्मामीटर जैसी इंजेक्शन रखा हुआ दिखाई दे रहा है टैबलेट रखी हुई दिखाई दे रही है।

अअ जैसे हॉस्पिटल क्लिनिक का या फिर कोई स्कूल का ऑफिस दिख रहा है।

यहीं कुछ ऊपर इंसान भी दिख रहे खड़े हुए लड़के टाइप के--

यह एक मग्गे की दुकान दिख रही है।

स्टैचू खड़े हुए हैं एक स्टैचू के हाथ में कुछ दिख रहा है पैर के पास में --

जो छोटासा गेट दिखाई दे रहा हैं इधर भी एक झाड़ दिखाई दे रहा हैं सामने--

यह एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जहां पर मरीज हैं।

टी_वी दिखाई दे रही है चालू कुछ टी_वी चालू है एक टी_वी बंद दिखाई दे रही हैं।

केक की शॉप है मोटरसाइकल दिख रही है दीवार की परछाई आ रही है सामने कार दिखाई दे रही है हार्ट शेप वाला वाइड --

और सीढ़ी जैसी है सामने पेड़ पौधे औद्योगिक जगह दिख रही है।

गेंदे की फूल की माला लगी हुई दिखाई दे रही है। बलून है ऑरेंज और पीले सफेद कलर के।

एक छोटी सी चिड़िया जैसे कि दिखाई दे रही व्हाइट कलर की।

वहां पर एक आदमी ने रिक्शा लिया है लाल कलर का गेट खुला दिख रहा है।

कोई आदमी देख रहा है या फिर गार्ड वाला दिख रहा है।

कपड़ा दिखाई दे रहा टंगा हुआ आदमी मोबाइल चला--

बैग टांग के खड़ा है बेक्स पड़े हुए है चेयर पे एक लटका हुआ बैग दिख रहा है।

सात साइड में एक शानवी करके दुकान है कुछ रोल टाइप का कुछ दिख रहा है लाइट्स दिख रही है अंधेरा है चश्मे का चित्र--

और इधर रोल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है कंप्यूटर है कीपैड है।